और सामने की तरफ बहोत सारे फोटो फ्रेम भी दिखाई दे रही है और कुछ लैंप भी रखे हुए हैं।

और सामने के तरफ एक बाउंड्री किया हुआ है।

और ऊपर की तरफ बहुत सारी लाइटे भी जल रही हैं।

और यहां पर मुझे स्टील का रेलिंग भी दिखाई दे रहा है और सामने की तरफ एक छोटा सा कूलर भी रखा हुआ है।

सामने के इस फोटो मे मुझे एक बहुत बड़ा ग्राउंड दिखाई दे रहा है।

और यहां सामने के तरफ मुझे बहुत सारे घर दिखाई दे रहे--

दिखाई दे रहा है जहां सामने की तरफ धान की रूपाई--

टेबल भी दिखाई दे रहा है।